कुछ जगह मंदिर पे कलर किया हुआ है।

सामने एक सोफा है मेज है मेज के ऊपर कुछ बोतल है लाइटिंग जल रही है।

लाइट जल रही है पंखा है।

यह एक ई मित्र केंद्र है।

आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं।

आदमी दिखाई दे रहा है आदमी के हाथ पे टैटू बना हुआ है दीवारों पे प्रिंटिंग की हुई है।

पास में हरे भरे पेड़ हैं।

कुछ अलग अलग लाइटें जल रही है।